सामने ही कृष्णा जी का और माता जी का वह चित्र भी बना हुआ है ऊपर ही नीले रंग का इसमें जाल लगा शटर लगा हुआ है और साथ ही दुकान है जिओ डिजिटल --

ये हॉल है। इस हॉल में सभा चल रही है भारत छोड़ो आंदोलन की सभा है पीछे की ओर बोहोत बड़ा बोर्ड लग रहा है जिसमें ऊपर की तरफ --

इस सड़क से तस्वीर ली गयी है सामने ही शोभा ग्राफिक्स सेंटर एंड कैफे है इंटरनेट कैफे | उसके ऊपर भी एक बोर्ड लगा हुआ है शोभा ग्राफिक्स के नाम से और उसपे कंप्यूटर की और कैमरे की फ़ोटो है।

यह रास्ते से तस्वीर ली गई सामने ही बिल्डिंग है दो बिल्डिंगों को बीच मे जोड़ा गया है । द्वार बना के --

एक बिल्डिंग है लाल रंग कि है और बड़ी बिल्डिंग है ऊपर छत से ऊपर छत पे ही बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं ।

सामने की तरफ बेड के बिल्कुल सामने खिड़की है खिड़की के दरवाजे खुले हैं कोने में एक टेबल रखी है जिसपे बैग रखा हुआ है ।

सड़क के इस पार फुटपाथ है। फुटपाथ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और एक आदमी बैठा हुआ है। फुटपाथ के इस ओर बहोत बड़ा पार्क --

शाम का समय है हल्का-हल्का अंधेरा हो चुका है पीछे की ओर पेड़ है बड़ा सा और जगह-जगह बिजली के खम्बे--

एक हॉल की तस्वीर है और एक मे अंदर की तरफ जाने का रास्ता है| सामने एक लकड़ी जिसमे शीशे लगे हुए हैं| ऊपर खिड़की है बहोत बड़े उसपे भी शीशे ही लगे हुए हैं।

छत से ये तस्वीर ली गई है छत पे जो ग्रिल लगी हुई है वो स्टील की लगी हुई है। सामने ही बहोत सारी इमारते हैं ।

बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर ही पार्क है जिसमें बहोत बड़े बड़े अशोका के पेड़ लगे हुए रहे हैं । एक मंजिला बिल्डिंग है ।

इसी साड़ी के ऊपर इस साड़ी के और भी रंग रखे हुए हैं पहला रंग नीला है फिर बैंगनी है फिर हरा है फिर महरून है।